यहाँ पर एक शेर है जो पिंजड़े के अंदर है पिंजड़ा जो लोहे का जाल का है और यह ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है।

यहाँ का दिवार जो ग्रे कलर और ब्लैक कलर में मिक्सिंग दिख रहा है ऊपर में काफी डिज़ाइनर मूर्ति और मंदिर जैसा कुछ बना हुआ है और ऊपर--

यह एक छत है जहाँ पर बहोत सारे लोग जो योगा कर रहे है उन सब के नीचे मैट्स है कुछ लोगों के नीचे नहीं भी है।

एक महिला है जो नीले रंग के साड़ी पहनी है वह मछलियों को बना रही है एक जेन्स है जो उचाई की ओर पर बैठा है बहुत सारे लोग है जो मछली लेने आये है।